गुफा सी है और उसमें एक गाड़ी जा रही है वाइट कलर की ऊपर पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ है उड़ --

उसके भी साइड से बहोत बड़े-बड़े पेड़़ लगे हुए हैं और बहोत बड़े-बड़े पहाड़ हैं और खुला आसमान --

सामने एक बहोत बड़ी नदी है जिसमें बहोत सारी नावें रखी हुई हैं।